बगल मे ब्ल्यु कलर की पानी की बिसलेरी की बॉटल भी है।

और इसके सामने दरवाजा और बहार पे बड़ा क्लियर दिख रहा है बहार में काफी सारी स्पेस है।

जिसको ओके अच्छे से इन्होने पानी भी दिया है और बढिया।

ये बंदा मजे में लग रहा है और पिछे का नज़ारा भी काफी अच्छा है और ये बोट भी काफी सुंदर लग रही है।

ये किसी सादि के बाहर का वेडिंग पॉइंट तो किसी हॉल का इनट्रान्स ये किसी इवेंट का इनट्रान्स लगता है।

यह फोटो काफी सुंदर लगरी है।

ये एक छोटा सा झरना दिखाई दे रहा है।

और सामने एक चट्टान सी है चट्टान के बगल में लग रहा है की धारा बह रही हो।

अर यहां पे थोडी-थोडी घास भी उगी है शायद उसमें मछलियां भी हो सकती हैं।